कुछ का रंग पीला और कुछ का रंग लाल है।

यहाँ पर गमले पड़े हैं कुछ गमले बड़े हैं कुछ गमले छोटे हैं।

ब्लैक और वाई वाइट है कुछ गमलों का रंग ब्लू है।

यहां पर डॉगी को डालने के लिए बाल्टी लगी हुई है जिनका रंग पीला और लाल है और डॉगी के खाने के लिए रॉयल केनिन --

पीछे एक मोटरसाइकिल खड़ा है।

साथ में एक ब्लैक कलर की--

सनग्लासेस शॉप है यहां पर अलग अलग तरह के ग्लासेस पड़े हैं जिसमें से कुछ बड़े ग्लासीज --

रेड़ी हैं रेड़ी के ऊपर एक--

कुछ खिलौने पड़े है कुछ चेयर पड़ी है बच्चों ने--

मुन्दर के पास एक आदमी खड़ा है जिसनें कोट डाला हैं।

पीछे एक आदमी खड़ा है जिसने ब्लैक कलर का लोवर और --